और यहाँ देख रहे होंगे की पंखा भी रखा हुआ है गेट में और लाइट है और यहाँ गमले भी देख रहे होंगे हम और गेट भी लगा है।

और यहाँ बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है ये मशीन भी देख रहे होंगे एक ट्रक भी खड़ा हुआ है।

--होंगे घास कितनी मस्त है और ट्रैफिक है और यहाँ से ट्रेन जा रही है और यहाँ ऑटो - वाटो रुके है यहाँ पर--

रेल है एएए मालगाड़ी देख रहे ये ट्रेन है खड़ी हुई है।

ये देख रहे होंगे कितनी मस्त ग्रीन लाइट भी जल रही है और यहाँ ब्लू भी है।